बिल्डिंग जो है जो पीले रंग की है और ऊपर से तार गया हुआ है कुछ लोग बोहोत सारे लोग खड़े हुए है सफेद रंग की लाईट जल रही है सफेद नीला आसमान है।

सामने एक साइड पे एक तार है जो कत्थई पीले रंग की बालकनी बनी हुई है सफेद नीला आसमान है।

कुर्सी रखी गई है कत्थे रंग की हरे रंग की पत्ती दीवाल सफेद है बगल में सफेद है ऊपर लाईट लगी हुई है।

स्टेज बना हुआ है जो एक आदमी खड़ा हुआ है जो काले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है --]

परदे लगे है सफेद रंग के गुबारे लगाए गए है जो कत्थे और पिले रंग के और हरे रंग की है पर दीवाल है सफेद पंखे लगे हुवे है काले रंग के बगल में परदे लगे हुवा जो--

ये कुछ आदमी खड़े-- जो सफ़ेद और पीले कपडे पहने हुए है नीचे बिछी हुई है परदे है।